कोई पत्थर बड़े हैं कोई छोटे हैं।

बहोत बड़ा हॉल है उसमें बहोत सारी गाड़ियां पड़ीं हैं।

पूरा रूम सजा हुआ है सरस्वती मां की फोटो भी दिखाई दे रही हैं और तिरंग तिरंगे का--

इस इस तस्वीर में बहोत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा सजा हुआ है रंग-बिरंगे लाइटों से--

थोड़ा सा पानी आया हुआ है पहाड़ों के बीच में से और बहोत सारी हरियाली है पहाड़ों पर बहोत सारी घास भी है।